खुबसूरत की रेलवे ट्रैक दिखाई दे रही है बहुत बड़े - बड़े तारे दिखाई दे रही है बहुत सारे टॉवरे लगी हुई है आसमान नीला दिखाई दे रहा है सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारी --

एक बहुत खूबसूरत सा कैफे दिखाई दे रहा है यहाँ शिशे की खिड़कियां दिखाई दे रही है एक बड़ा सा गेट भी दिखाई दे रहा है शीशे का।

बहोत ही खूबसूरत रूम दिखाई दे रहा है टीविया भी दिखाई दे रही है आधे दीवार पर मार्बल लगे हैं दीवार की कलर येलो और वाइट है।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

पानी की बोतले भी दिखाई दे रही हैं रेड कलर की कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं एक बड़ा-सा बोर्ड भी लगाया गया हैं बोहत सारी दुकाने दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर एक अअ बोहत सारे तारे भी दिखाई दे रही हैं लैम्पपोस्ट भी दिखाई दे रहा हैं आसमान नीला दिखाई दे रहा हैं बोहत ही खूबसूरत और प्यारा सा नज़ारा हैं।

बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसमें बहुत सारी छोटी बड़ी खिड़कियां बड़े-बड़े गेट भी दिखाई दे रहा है और बड़ा सा टावर दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पर बहुत सारी बाइकें भी पार्क की गयी है यहाँ की जमीने कच्ची दिखाई दे रही है बहुत सारी लकड़ियाँ भी रखी गयी है बांसे भी दिखाई दे रही है आसमान नीला दिखाई दे रहा है बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा मंजर दिखाई दे रही--

छोटी सी मंदिर दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारी मूर्तियों को रखा गया है कलशी दिखाई दे रहा है टिफिन भी दिखाई दे रहा है बहुत सारी थालियां भी दिखाई दे रही है।

अंदर बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं बहोत सारी लाइटो से डेकोरेशन किया गया हैं यहाँ नीचे भी बहोत सारे लोग हैं बड़ा-सा ग्रिल का गेट भी दिखाई दे रहा हैं सीढ़िया भी दिखाई दे रही हैं आसपास बस बहुत सारे--